और रूम का कलर ये वाइट और ब्राउन है।

और यहां पे दो टेबल और चार चे पांच चेय रखी हुई है।

और दो लाइटें जल रही हैं वो लाइटें दिख रही हैं और कुछ लिखा हुआ है बस वो दिख रहा है।

कुछ खुल खुला ग्राउंड ग्राउंड नहीं है ऊपर से ऐसा लग रहा है कि--

और एक दो एक इंसान भी खड़ा है बाहर गेट के बाहर--

वो हैं और चटकेरी हैं तीन चटकेरी हैं।

यहां पे चार डब्बे रखे हुए हैं और एक टै--

ये एक हॉल लग रहा है रूम तो नहीं लग रहा है हॉल लग रहा है।

ऑफिस भी हो सकती चेयर भी रखी हुई है ऑफिस है।

और ए_सी लगी हुई है पंखा है लाइट चालू है काफी--

ये एक डॉगी है या कैट या शेर है।

इसमें से कुछ लग रहा है पिंजरे के अंदर बंद है।

ऐसा लग रहा है बस और तो मशीन लगी हुई है किसी चीज की।

यहां पे कुछ मशीन लगी हुई है पानी की पता नहीं क्या है पर यहां पे कुकिंग एक्सपीरियंस लिखा हुआ है विथ --

ये कोई शॉप है गाड़ी बनाने का दिख रहा है।

पास में अह पौधा लगा मतलब पेड़ लगा हुआ है उसमें पत्ते हैं कम पत्ते लगे हुए हैं।

यह ग्राउंड लग रहा है कुछ गार्डन तो नहीं है कुछ ग्राउंड है सामने बेंच रखी हुई है और पौधे हैं पेड़ लगा हुआ है ग्रीन कलर के पत्ते हैं।

आये होंगे खाना खाने और ढाबे का कलर है ब्राउन कलर का--

और ऑफिस का कलर है क्रीम कलर ऊपर पंखे हैं लाइट्स लगी हुई है काफी सारे लोगों ने अलग अलग कलर भी पहन के रखा है।

और उसने ब्लैक डाउन कल डाउन कलर जैसा लग रहा है दूसरे ने

बाहर जाली लगी हुई है और एक शायद इंसान भी दिख रहा है यहां से--

रास्ता तो ऐसा लग रहा है आने जाने का लग रहा है।

और जो दिख रहा है बिस्किट शायद वगैराह लटका लटक रहा है।

ये दिख रही है कोको कोला डब्बे में शायद चॉकलेट्स होंगी।